एक तालाब में एक बच्चा नहा रहा है एक बच्चा बगल में खड़ा है जिसने पीली टी शर्ट पहनी हुई है।

यह एक दुकान है जिस पर घर की जरूरतो का सामान रखा है जैसे लाइफबॉय साबुन सर्फ --

यहां पर नीले कलर का बादल है एक हरे कलर का पेड़ भी लगा हुआ है।

एक बेड हैं जिसकी पीली चद्दर है एक टेबल हैं एक स्प्राइट --

जिसके अंदर एक आदमी हरे रंग की बुरशेट पहन कर बैठा हुआ है।

जिसकी छत सफेद रंग की है।

नीचे दो तीन आदमी बैठे हुए हैं जिसकी कारपेट ना--